अपने सामने एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में हम एक हाथी देख रहे हैं। हाथी बोहत बड़ा है और उसके ऊपर में एक आदमी खड़ा है।

घास का मैदान दिख रहा है हमें और ऊपर साफ आकाश दिख रहा है|

यह एक पेड़ दिख रहा है हमें जिसकी पत्तियां झड़ चुकी है और पीछे बहुत बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है। सामने हर भरे छोटे छोटे घास पौधे दिख रहे हैं।

साथी कुछ पेड़ देख रहे हैं बड़े-बड़े और आसमान नीले आसमान में सफेद बादल दि --

हमारे सामने एक तस्वीर देख रहे हैं हम।

बिल्डिंग दिख रहा है जिसमें बहोत छोटी छोटी बहोत सारी खिड़कियां हैं। रास्ता काफी साफ़ सुथरा नजर आ रहा --

हम अपने सामने एक फोटो देख रहे हैं। इस फोटो पे हम एक काले रंग की शर्ट पहने हुए एक लड़के को देख रहे हैं।

पूल को चारो तरफ घेरा गया है। अभी पूल में कोई भी लोग हमें नहीं दिख रहे।

ये एक छोटा-सा पिंजड़ा है। पिंजड़ा के अन्दर हम बोहोत सारे रंग बिरंगे तोते देख रहे हैं जो हरे रंग के हैं। कुत एक-दो सफ़ेद रंग के भी हैं।

ऊपर एसी लगा हुआ है। बगल में दरवाजा है काफी सुंदर सा।

यह तस्वीर के सामने हम देख रहे हैं कार है और बोहत सारे लोग इकठे हुए हैं।